ये चित्र मा हम तें सड़की किनारा एक बाट्टू भीतर की तरफ च जाण लग्युं जफणा ओर पोर हम तें कुछ रेलिंग छा दिखेण लगीं।

ओर -पोर बड़ी बड़ी इमारत छ और पिथर पणा हम तैं बड़ा- बड़ा डाला भी दिखेण लग्यां।

यमणा हम त बहोत सारा सामान छन दिखेण लग्यां जमणा हम त कुछ कपड़ा कुछ टोपला और बैग बुग दिखेण लग्यां। यमणा हम त कुछ लोग भी छा दिखेण लग्यां। एंच वालों का छोटा छोटा कागज छा लग्यां जों पर कुछ नंबर छा लिख्यां।

अर एंच एक लाल छप्पर छ दिखेण लग्युं पिछाड़ी फणा हम तें कुछ डाला दिखेण लग्यां अर उंफणी भोत सारी इमारत अर कुड़ा छन।